ये एक बहोत जंगल टाइप है यहाँ पे चारों तरफ बहोत -अ पेड़-पौधे हैं बहोत खतरनाक पेड़-पौधे बड़े-बड़े पेड़ हैं।

यहाँ पे बहोत सारी हरियाली दिख रही है बड़े और छोटे पेड़ और मोटे पेड़ और आजू बाजू वो छोटी-छोटी अ घास और प्लांट दिख रहे हैं।

यहाँ पे एक टीन सेट है टीन सेट के नीचे एक पत्थर रखा हुआ है पत्थर पर रक भैया कुछ एक्सरसाइज़ कर रहे हैं ऊपर पैर करें हैं नीचे हेंड करें हुए हैं खुला नीला अस्समन --

ये एक मार्किट एरिया है यहाँ पे एक कार खड़ी हुई है आजु बाजु भोत सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं भोत सारी दुकान हैं यहाँ पे एक येल्लो कलर की बिल्डिंग --

ये एक किराना स्टोर है यहाँ पे एक कुर्सी दिख रही है कुर्सी के इस साइड एक कांच में भोत सारी टॉफ़ी चॉकलेट्स टँगी हुई हैं और वहाँ पे थोड़े भोत एग दिख रहे हैं।